मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स में बुकमार्क्स संयोजन और प्रिंटिंग पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम बुकमार्क्स के बारे में सीखेंगे
हम बुकमार्क्स संयोजित करना फ़ायरफ़ॉक्स पेज को सेटअप करना प्रिव्यू और प्रिंट करना भी सीखेंगे
इस हम उबंटू 1004 पर फ़ायरफ़ॉक्स वर्ज़न 70 का इस्तेमाल कर रहे हैं
अब फ़ायरफ़ॉक्स ब्राउजर खोलते हैं
डिफ़ॉल्ट रूप से याहू होम पेज खुलता है
अक्सर उपयोग के पेज पर नेविगेट करने के लिए बुकमार्क्स आपकी मदद करते हैं
हमने एक पिछले ट्यूटोरियल में बुकमार्क्स के बारे में थोड़ा सीखा था
हमने जीमेल के लिए बुकमार्क भी जोड़ा था
जीमेल होम पेज को खोलने के लिए इस पर क्लिक करें
आपको जीमेल होम पेज पर ले जाया जाएगा
क्या आपने एड्रेस बार में जीमेल एड्रेस की दाएँ तरफ के पीले स्टार पर ध्यान दिया
यह दर्शाता है कि इस साइट को बुकमार्क कर दिया है
आप बुकमार्क का नाम बदलने के लिए स्टार का उपयोग कर सकते हैं और इसे एक अलग फ़ोल्डर में रख सकते हैं
जीमेल का नाम माइगमेलपेज में बदलें और इसे मायन्यूबुकमार्क्स नामक नए फ़ोल्डर में रखें
एड्रेस बार में पीले स्टार पर क्लिक करें
एडिट थिस बुकमार्क डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है
नामे फ़ील्ड में माइगमेलपेज दर्ज करें
फोल्डर ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें और चूसे चुनें
बुकमार्क्स मेनू चुनें और न्यू फोल्डर पर क्लिक करें
एक न्यू फोल्डर बनता है
इस फ़ोल्डर का नाम माइबुकमार्क्स से बदलें
टैग्स में इमेल टाइप करें
टैग्स हमें बुकमार्क्स को श्रेणीबद्ध करने में मदद करते हैं
आप एक बुकमार्क के साथ कई टैग्स जोड़ सकते हैं
उदाहरण के लिए जब आप एक शॉपिंग साइट को बुकमार्क करते हैं
आप इसे गिफ्ट्स बुक्स या टॉयज़ इन शब्दों के साथ टैग कर सकते हैं
डोन पर क्लिक करें
वैकल्पिक रूप से आप पेज को बुकमार्क करने के लिए CTRL और डी की भी दबा सकते हैं
मेनू बार से बुकमार्क्स पर क्लिक करें
बुकमार्क्स मेन्यू में माइबुकमार्क्स फ़ोल्डर दिखाई देता है
फ़ोल्डर पर कर्सर रखें
यहाँ माइगमेलपेज बुकमार्क सेव किया है
अब एड्रेस बार में इमेल टैग टाइप करें
ध्यान दें कि माइगमेलपेज साइट सूची में पहले विकल्प के रूप में दिखाई गयी है
तो आपने बुकमार्क का नाम बदल दिया इसे दूसरे फ़ोल्डर में सेव किया और टैग से इसका पता लगाया
अब wwwgooglecom वेबसाइट को बुकमार्क करें
एड्रेस बार में एड्रेस चुनें और इसे डिलीट करें
अब wwwgooglecom टाइप करें
Enter दबाएँ
अब एड्रेस बार के दाहिने कोने में स्टार पर क्लिक करें
गूगल वेबसाइट बुकमार्क हो गई है
इसी तरह चार अधिक साइट बुकमार्क करें स्पोकेन ट्यूटोरियल yahooफायरफॉक्स add ओन्स और उबुंटू
ध्यान दें कि हमने इन बुकमार्क्स को फ़ोल्डर में सेव नहीं किया है
और हमारे द्वारा बनाए बुकमार्क हम डिलीट कैसे करें
बेशक आपने पहले ही एडिट थिस बुकमार्क डायलॉग बॉक्स में रिमूव बुकमार्क बटन देखा है
wwwgooglecom बुकमार्क को डिलीट करें
एड्रेस बार में wwwgooglecom टाइप करें
पीले स्टार पर क्लिक करें
एडिट थिस बुकमार्क डायलॉग बॉक्स में रिमूव बुकमार्क बटन पर क्लिक करें
मेन्यूबार से बुकमार्क्स और माइबुकमार्क्स पर क्लिक करें
बुकमार्क्स मेन्यू में अब गूगल बुकमार्क दिखाई नहीं देता
अपने बनाए हुए बुकमार्क्स आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं
आप कई तरीकों से बुकमार्क्स को एक्सेस कर सकते हैं
आपके द्वारा बुकमार्क की गई साइट को एक्सेस करने का आसान तरीका है कि एड्रेस बार में नाम टाइप करें
एड्रेस बार पर क्लिक करें प्रदर्शित एड्रेस को चुनें और इसे डिलीट करें
अब एड्रेस बार में जी अक्षर टाइप करें
ध्यान दें कि जी अक्षर से शुरू होने वाली वेबसाइट्स की एक सूची दिखाई देती है
यह वही साइट्स हैं जो आपने बुकमार्क टैग या विजिट की हैं
आप अपने बुकमार्क्स को लाइब्रेरी विंडो में देख और व्यवस्थित कर सकते हैं
मेनू बार से बुकमार्क्स पर क्लिक करें और शो अल्ल बुकमार्क्स चुनें
लाइब्रेरी विंडो खुलती है
डिफ़ॉल्ट रूप से आपके बनाए हुए सभी बुकमार्क्स अनसॉर्टेड बुकमार्क्स फ़ोल्डर में सेव होते हैं
ध्यान दें कि याहू स्पोकेन ट्यूटोरियल्स उबुंटू और फायरफॉक्स add ओन्स बुकमार्क यहाँ सूचीबद्ध हैं
मानते हैं कि हम बुकमार्क्स मेन्यू में याहू इंडिया बुकमार्क जोड़ना चाहते हैं
पहले लाइब्रेरी विंडो को स्क्रीन के केंद्र में लाएँ
अब हम मेनू बार और ऑप्शन्स को स्पष्ट देख सकते हैं
अनसॉर्टेड फ़ोल्डर से याहू बुकमार्क चुनें
बायाँ माउस बटन दबाएँ और बुकमार्क को बुकमार्क्स मेन्यू पर ड्रैग करें
सुनिश्चित करें कि कर्सर बुकमार्क्स मेन्यू पर हो
बुकमार्क्स मेन्यू खुलता है
माउस सूचक मेन्यू पर रखें और बायाँ माउस बटन छोड दें
अब बुकमार्क्स मेन्यू पर क्लिक करें
अब याहू बुकमार्क बुकमार्क्स मेन्यू पर दिखाई देता है
सीधे लाइब्रेरी विन्डो से बुकमार्क खोलने के लिए उस पर डबल क्लिक करें
अब लाइब्रेरी विन्डो बंद करें
फ़ायरफ़ॉक्स आपको बुकमार्क्स को क्रमबद्ध भी करने देता है
बुकमार्क्स को नाम से क्रमबद्ध करें
मेनू बार से व्यू पर क्लिक करें साइडबार चुनें और फिर बुकमार्क्स पर क्लिक करें
बुकमार्क्स साइडबार बाएं पैनल में खुलता है
googleकॉम को फिर से बुकमार्क करें
बुकमार्क्स साइडबार से अनसॉर्टेड बुकमार्क्स फ़ोल्डर चुनें और उस पर दायाँ क्लिक करें
सोर्ट बाय नामे चुनें
बुकमार्क्स नाम से क्रमबद्ध होते हैं
आप बुकमार्क्स को स्वतः से भी पुनःव्यवस्थित कर सकते हैं
बुकमार्क्स साइडबार से बुकमार्क्स मेनू फ़ोल्डर पर क्लिक करें और उसे खोलें
आगे अनसॉर्टेड बुकमार्क्स फ़ोल्डर पर क्लिक करें और उसे खोलें
माउस स्पोकेन ट्यूटोरियल बुकमार्क पर ले जाएँ
अब बायाँ माउस बटन दबाएँ और बुकमार्क को बुकमार्क्स साइडबार के उबुंटू एंड फ्री सॉफ्टवेयर फ़ोल्डर तक ड्रैग करें
माउस बटन छोड़ दें
बुकमार्क उबुंटू एंड फ्री सॉफ्टवेयर फ़ोल्डर में ले जाया गया है
आपके द्वारा बुकमार्क्स साइडबार में किए गए परिवर्तन बुकमार्क्स मेन्यू में भी प्रतिबिंबित होते हैं
आप बुकमार्क्स को स्वचालित रूप से भी क्रमबद्ध कर सकते हैं
मेनू बार से बुकमार्क्स पर क्लिक करें और शो अल्ल बुकमार्क्स चुनें
दिखाई देने वाली लाइब्रेरी विंडो में बाएं पैनल से अनसॉर्टेड बुकमार्क्स चुनें
अब व्यूज सोर्ट और सोर्ट बाय एडेड पर क्लिक करें
एड्रेस जिस क्रम में बुकमार्क के रूप में जोडे गये थे उसी के अनुसार क्रमबद्ध होते हैं
क्लोज पर क्लिक करें
अंततः सीखते हैं कि इस वेब पेज को प्रिंट कैसे करें
पहले हम इस वेब पेज को प्रिंटिंग के लिए सेट करें
फ़ायरफ़ॉक्स मेन्यू बार से फाइल पर क्लिक करें और पेज सेटअप चुनें
पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है
पेज साइज आ4 चुनें
पोर्ट्रेट के रूप में ओरिएंटेशन चुनें
एप्ली पर क्लिक करें
सेटिंग्स कैसे लागू किए गए हैं यह जांच करने के लिए फाइल पर क्लिक करें और प्रिंट प्रीव्यू चुनें
आप पेज को बिल्कुल वैसे देख सकते हैं जैसे वह प्रिंट के बाद दिखाई देगा
बाहर आने के लिए क्लोज पर क्लिक करें
फ़ायरफ़ॉक्स मेन्यू बार से फाइल पर क्लिक करें और प्रिंट चुनें
स्क्रीन पर प्रिंट डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है
यहां हम जनरल टैब में जेनेरिक प्रिंटर ऑप्शन चुनेंगे
आगे रंगे फील्ड में अल्ल पेजेस चुनें
कॉपीज में हम 1 चुनेंगे
आप्शंस टैब पर क्लिक करें और इग्नोर स्केलिंग एंड श्रृंक टो फिट पेज विड्थ चुनें
प्रिंट पर क्लिक करें
अगर प्रिंटर सही ढंग से कॉन्फ़िगर किया है तो प्रिंटर प्रिंट शुरु करना चाहिए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
इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा बुकमार्क्स के बारे में हमने यह भी सीखा कि बुकमार्क्स संयोजित कैसे करें फ़ायरफ़ॉक्स पेज को सेटअप कैसे करें प्रिव्यू और प्रिंट कैसे करें
यहां आपके लिए एक नियत कार्य है
एक नई मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स विंडो खोलें पांच नई साइट्स पर जाएं
सभी को बुकमार्क करें
सभी बुकमार्क्स को एक नये फ़ोल्डर में सेव करें
बुकमार्क्स को उल्टे वर्णमाला क्रम में संयोजित करें
अंतिम बुकमार्क की हुई साइट पर जाएं
प्रिंट के लिए वेब पेज सेटअप करें और इसे प्रिंट करें
निम्न लिंक पर उपलब्ध विडियो देखें
यह स्पोकन ट्यटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है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
इसे भारत सरकार के एमएचआरडी के राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने आई सीटी के माध्यम से समर्थित किया है
इस मिशन पर अधिक जानकारी दिए गए लिंक पर उपलब्ध है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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद